चार आउटडोर है दो आदमी है दो साइकिल है खिड़की है।

एयरटेल का दुकान है इसमें सिम मिलता है।

व्हाइट कलर का पेंट है बुलु का पेंट है लाइट है।

डाक इंडिया पोस्ट चौबीस घंटा गेट है शीशा का गेट है।

सुबह का दिन है इलेक्ट्रिसिटी वाला तार है।